यहां पर मुझे रोड साइड एरिया दिख--

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा खेत दिख रहा है जहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है।

अंदर एक बहुत--

क्लास की डेकोरेशन की गई है।

जहां पर बहुत सारे घर नजर और--

यहां पर बहोत सारे टेबल्स रखे हुए हैं और यहाँ--

जिसके अंदर बहुत--

यहां पर मुझे एक एरिया दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक रोड साइड एरिया दिख रहा है।

और आसपास बहुत सारे--

दिखाई दे रही है शॉप--

यहां पर मुझे एक होटल --

यहां पर दो घर बने हुए हैं।

और बैक साइड में बड़े-बड़े पेड़ भी है।

और आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नजर आ रही है।

यहां पर मुझे एक हॉल दिख रहा है।

है और बहुत सारी लाइटिंग्स भी है।

जहां पर बहुत सारे शॉप्स दिख रहे--

जहां पर बहुत बड़े--

पर एक व्हाइट कलर की कार है जो रेड --

बहुत सारे लोग भी है।

बहुत सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं।